बाहर में ग्रीन कलर का फ्लोर में रखे हैं।

और यलो कलर का चेयर जो पांच ठो है और स्टील वाला जो तीन ठो है।

ई फोटो में जो एक दुकान को दिखा के है।

साड़ी पहन के है वो लोग जो उसके बाद जो--

यह फोटो में जो हमको एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहे जिसमें बहुत ज्यादा इंसान लोग है।

डीवार का कलर जो ग्रीन है लाइट सब जलाके हैं ऊपर में टीना है स्टैंड फैन है।

किसी किसी का कलर जो ऑरेंज व्हाईट है किसी किसी का ग्रीन व्हाइट --

सामने बड़ा बड़ा पाइप भी है।

ये जो एक मोबाइल का है।

पानी का रंग जो इधर में जो सफेद दिखाई दे रहे हैं।

और रेड कलर हैं।

और उसका फेस टो डाक के है।

उसका पीछे में जो एक बहोत बड़ा पानी दिखाई दे रहा है।

नाव में जो बहुत ज्यादा आदमी लोग बैठ के हैं।

नीचे में जो फ्लोर है उसका कलर जो वाइट है।

ये उधर में जो बहोत ज्यादा सामान सब टंगा के है तो--

कच्चा घर भी है टीना घर भी है फिर ऊपर में आसमान है।

उपर में जो लाइट सब जला के है ए_सी है।